ये एक पत्थर का पहाड़ है।

यहां एक लड़का ऊपर है।

ये काला कलर का पत्थर होगा शायद।

जहां टॉयलेट दिखाई दे रहा है।

ये एक दवा का दुकान है।

और यहां पे एक अंकल है जो हाथ उधर दिखा रहा है।

एक स्टोर का का नाम है टर्टल और दूसरा स्टोर का नाम है पवन फैशन्स ।

यहां पे बहुत सारे लोग भी हमको दिख रहे हैं और यहां पे फाउंटेन भी है।

ये एक किराना का दुकान है।

इसके बाद यहां पे एक बलून भी है जो की लाल रंग का है और यहां पे चा ठो है और एक फैन भी है जो कि अभी नहीं चल रहा है।

ये फोन का एक शॉप है।

ये एक जिम है जोकि अभी खाली खाली है और यहां पे दो तीन ठो लोग सब जिम करने के लिए आए हैं।

यह एक होम स्टे है।

ये एक मछली का बाजार है।

लड़कियां सब बैठे हुए हैं।

और यहां पे भी एक पोस्टर है जहां पे एक लड़की कंबल लेके खड़ा हुआ है।

यहाँ पे एक जहाज है बहुत सारा जहाज है।

और एक सीन का फूल है।

और यहां पे ये कपड़ा कपड़े रखा हुआ है।

और इधर दो तीन पांच पुतला है जो की खड़ा हुआ है।

तीन यहां पे नौ हाथी हैं और एक बच्चा है इधर।

और एक हाथी इधर मुड़ा हुआ है और एक हाथी उधर।

ये एक रेल का स्टेशन है जंक्शन है।

यहां पे रास्ता वगैरा ट्रेन का पटरी सब है।

एक सब्जी का बाजार है।

और इधर खाने का समान है और कपड़ा कपड़ा वगैरह है।

ये एक गेस्ट हाउस है।

गेट में ग्रीन कलर लगाया हुआ है।

हम फोटो में देख पा रहे हैं कि यहां पर एक पेड़ का डाली भी सब हम लोग को दिख रहा है।

इसमें भी दो तीन आदमी हैं।

और यहां पे डीजे लाया हुआ है।

एक होटल है जहां की मिस्टी बुंदिया क लड्डू।

इधर संदेश दिखाई दे रहा है।

अभी इस शॉप में कोई नहीं है।

उसके बाद यहां पे एक बाइक दिखाई दे रहा है।

उसके बाद इधर एक थैली है और इधर एक मकान है।

एक बाइक में आ रहा है और एक मैजिक में आ रहा है कार में।

ये एक ऑफिस है ये ब्लॉक का ऑफिस है।

और यहां पे एक केक है।

गेट में ताला लगाया हुआ है।

बहोत इधर एक पोस्टर वगेरा लगा हुआ है ये ब्लू कलर का है।

आदमी सब ट्रेन में जा रहा है और यहां पे एक समान उतार राहा है एक महिला है जो की बेग लेके खड़ा है।

उसके बाद यहां फोटो वगैरा क्लिक कर रहा है।

और एक आदमी छोला लेके उधर जा रहा है।

फिर बाहर निकल रहा है अये या फस गया है पता नहीं ओ।

के बाद यहां पे दो पिलर दिख रहा है।

एक जग है गिलास है।

यह मुर्गी बेचने वाला शॉप है यहां की अभी एक भी मुर्गी नहीं है।

और एक ढाबे में मुर्गी सब है।

मछली सब भी है यहां पे।

बना रहा है और उधर एक टेबुल है टेबुल के ऊपर गमछा है।